पोस्टर लिए हुए उनमें ड्राइंग कलर भरती हुई दिखाई दे रही है और काफी बढ़िया तस्वीर है यह।

तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी एक बहुत बड़े महल एक तस्वीर नजर आ रही है और शादी ब्याह की शादी ब्याह की तस्वीर नजर आ रही है।